सामने की ओर पेड़ पौधे घाँसे है। पेड़ पोधो का साइज कुछ छोटे बड़े है ओर उसका सभी का रंग हरा भरा है।

पीछे बड़ा सा मकान है अगल बगल कुछ पेड़े है जोकी साइज़ मे छोटे है हरे भरे है बहुत से घासे है जोकि हरा-भरा है।

जो की हरे भरे है। घांसे है। हरा भरा है। बि-ब्रिज काफी पुराना है।

एक बड़ा-सा तालाब है| तालाब का पानी गहरा है रंग नीला है सीढ़ियां बनी है| इस लोहे की सीलिंग लगी है एक बड़ा-सा मंदिर है।

एक रास्ता है रास्ते के बगल में बड़ा सा मकान है।

एक आदमी बैठा है जिसका पांव और चप्पल दिख रहा है| बहुत से लाइटें नीचे टाइल्स लगी हैं।

दि टिन से लोहे के खंबे हैं जिनमे कुछ फुले लगी है पीछे की ओर कुछ लोग बैठे हैं नीचे लाल कलर की चद्दर बिछी है।

कारे खड़ी है जो कि सफेद कलर की है बहुत पे तीन पेड़े है जो कि हरा-भरा है पीछे की ओर बहुत से मक़ाने दिख रहे है कुछ छोटे-बड़े मकाने है।

एक कमरा है कमरे में काचे है जिसमें बीच में छे पुतले बैठे हैं पीछे कुछ चीजे लकड़ी की बनी है अगर-बगल का काचे लगे है लाइटे लगी है।

बगल-बगल कपड़े रखे हैं नीचे टाइल्से लगी हैं पीछे दीवाल है जिसमें एक पोस्टर लगा है एक लड़की बनी है।

पेड़-पौधे है हरे भरे हैं एक टावर बने है सामने बड़े घर है जो की सफेद कलर का दिख रा है काफी बड़ा है।

उर है एक पीछे बड़ा सा टीना है।

दो आदमी है चार आदमी है बैडमिंटन खेल रहे हैं| बीच में नेट लगा है नीचे हरे कलर की टाट बीछी है एक बॉक्स दो बोर्डे हैं।

एक छोटा-सा मॉल है| मॉल में एक-क-अ तेल का डब्बा है पारले-जी की पैकेट रखी है मैगी की पैकेट रखे हैं।

एक मैदान है मैदान में एक टावर है जिसमें बहुत से कुछ अ--